पहाड़ व्यू देखने को मिला है।

पीछे मे जंगल और पहाड़ भी दिख रहा है।

बेम्बू से बनाया फेंसिंग भी देखने को मिला है।

रोड भी थोड़ा भीगा भीगा नजर आ रहा है।

ये तस्वीर में मुझे सुंदर सा टिना से बनाया हुआ घर देखने को मिला है।

घर के पीछे में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ और गच्चियां भी देखने को मिला है।

बिल्डिंग को येलो कलर और रेड से पेंट किया गया है।

ये तस्वीर में मुझे लंबा सा ब्रिज बनाया देखने को मिला है।

बहोत सारे पत्थरों पे दिखाई दे रहा है।

दो के घर भी बनाया हुआ है।

में ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।

पीछे में शर्ट लोग भी टंगाया हुआ देखने को मिला है।

गेट के बाहर में ग्रास भी देखने को मिला है।

तीनों के कलर ब्राउन है।

चर्च भी बनाया हुआ नजर आ रहा है।

ये तस्वीर में मुझे पिकनिक स्पॉट नजर आ रहा है।

और गाड़ी भी पार्किंग किया है।

बाहर में एंबुलेंस भी नजर आ रहा है।

ये तस्वीर में मुझे मेडिकल रूम देखने को मिला है।